यह बड़ा सा हॉल है जिसमे आप देख सकते है काफी सारे साउंड लगे हुए है और एक सोफा लगा हुआ है।

और सामने आप देख सकते है एक बड़ी सी एल_सी_डी लगी हुई है।

आप देख सकते है एक बड़ा सा स्कूल जैसा बना हुआ है जिसका गेट खुला हुआ है।

और आप देख सकते है काफी सारे पेड़ पौधे भी है आस पास--

जो प्लांट लगे हुए काफी सारे और अंदर आप देख सकते है बैलून काफी सुन्दर--

और केबिन के दिवार पर हम देख सकते है काफी सुन्दर पेंटिंग की गयी है।

और ये एक लोडिंग गाड़ी के नीचे पंडर बना हुआ है एक रसी पड़ी हुई है।

अ फ्राईस प्री लगा हुआ दीवार पर और एक जेन्स बेठा हुआ है जिसने पि_पि_टी_के किट पेंक के रखी हुई है ।

आप देख सकते हैं ये एक काफ़ी सुंदर बड़ा सा मकान बना हुआ तीन मंजिला का--

यह एक काफी सुंदर हॉल है जिसमे चर्च बना हुआ है।

पेड़ पौधे लगे हुए है और दोनों तरफ ऐ_सी लगे हुए है दुकान पे --

और दुकान के बहार बहोत बड़ा एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक बाके बिहारी जी की छोटी सी--

प्यार सी वाइट कलर में मूर्ति है जिन्होंने कान्हा जी ने हाथ में मुरली पकड़ के रखी हुई है।

अः माथे पर बहोत प्यारा भारंगा बना हुआ है जिसमे काफी सुन्दर सारे सारे नग लगे हुए है।

ये बहोत ही प्यारी प्रतिमा है जिसको पानी में पैक करके रखा गया है।

यह एक दुकान है जिस में रेलिंग खिड़किया गेट वगैरहा मिलते है स्टील के--

काफी बड़े और कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए--

पीछे स्टेज बनाया गया है जिस के पीछे एक बैनर लगा हुआ है।

और टोल का काफी बड़ा टी सेट बना हुआ है जिस पर बहोत ही लम्बा चोड़ा बोर्ड भी बना हुआ है।

ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमे काफी सुन्दर झूमर लगी हुई है और बहोत सारे--

आप देख सखते है ये काफी बड़ी दुकान है जिसमे काफी सारे रैक रखी है और उनमे अलग अलग प्रकार के डॉगी के--

बोरिया भी रखी हुई है और सामने डॉगी की चैन और पटे वगैरह भी रखे हुए है।

काफी सारा कुछ लिखा हुआ है जोकि पंजाबी लाइन में और एक कूलर रखा हुआ है साइड में--

कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे है और सामने एक एल_सी_डी लगी हुई है।

बड़ी सी और कुछ लोग आगे की तरफ खरीदारी करने जा रहे है।

यह एक बड़ा सा होल है जिसमे आप देख सकते है कुछ डस्टबिन वगेरह रखे हुए है और इसपे --

और सामने ही कुछ खेत वेट नज़र आ रहा है और कुछ गाड़िया भी खड़ी हुई है और सीधाइ के लिए कुछ रसिया भी बंधी गयी है।

और यही साइड में कुछ रोल जैसा कुछ रखा हुआ है।

ये एक बड़ा सा झरना है जो की आप देख सकते है काफी सारे लोग--

लाइटे लगी हुई है और कुछ लोग एक जेन्ट्स नीचे खड़ा हुआ है और नीचे भी काफी सारी लाइट लगी हुई है।

एक मकान है जिसके बाहर आप देख सकते है बड़ा सा गोडाउन है मकान नही और कुछ लोग बाहर खड़े है।

ये एक बॉक्स है जिसमें काफी पुरानी डिजाइन अंदर रखी हुई है।

स्टैंड बना हुआ है जिस पे मधुमख्खी का छटन भी बने हुए है छोटे छोटे जिसमे बहुत सारी--

और एक बड़ी सी बिल्डिंग भी नज़र आरही है सीढिया बनी हुई है कांच में से--

और जो इलेक्ट्रीशियन जोड़ रखी हुई है जो की नीचे--

दो अलमारी रखी हुई है बिच में काफी सारी--

सोफा लगाए गए है और एक टेबल रखी है और सोफा पे एक टेडी बियर भी रखा हुआ है।

ये एक छत बन रही है जिसपे लोग वार्ता गाडी से माल लेके आरा है मसाला --